और यहां पे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है और आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां हरे हरे छोटे पड़े भी दिखाई दे रहे है।

और यहां बहुत सारी ग्रिल्स दिखाई दे रहे है।

यहां पे बड़े बड़े सूखे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और यहां ऐरोप्लेन में छोटे छोटे लाइट्स दिखाई दे रहे है।